आप यहाँ यह देख सकते हैं की कितने ही अच्छे-अच्छे घर दिखाई दे रहे --

आप यहाँ यह देख सकते हैं की एक इतने सारे मज़दूर घर की --

तलाव में बहोत सारे आदमी यहां पे नाव का आनंद उठा रहे हैं। आप भी यहाँ आके-आके इस दृश्य का आनंद उठा --

यहाँ का दृश्य देख कर आप बहुत ही अचंभव हो जायेगें यहाँ की आ के आप --

बहुत ही अच्छी सर्विस देती है। आप यहाँ --

यहाँ देख सकते हैं की यहां एक छोटा सा तलाव है। तलाव में एक छोटा सा झरना भी --

यह मंडप देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है और इसकी बनावटी भी बहुत ही अच्छी लग रही है।

आप भी यहाँ आकर इस झील का आनंद उठा सकते हैं | यह झील दिखने में बहुत ही अच्छा है ।